यह एक रूम का दृश्य है जहां पे दो बाइक लगाई गई है।

यहां पे एक पोस्टर भी लगाया गया है जिस पे लिखा गया है यमहा ।

इसमें स्विमिंग पुट लिखा हुआ है एवं इसके गेट का गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान का बाहर का दृश्य है जहां पे इस दुकान को करकट के माध्यम से बनाया गया है।

हम इसका दुकान के बाहर में बहुत सारे चेयर और समान भी दिखाई दे रहे हैं।

तथा स्टेज के ऊपर में चार लोग भी नजर आ रहे हैं।

एवं देवालो में पंखे भी लगाए गए हैं।

तथा बड़े बड़े करकट के माध्यम से इस दुकान को बनाया गया है।

यहां पे दो आदमी धोती पहने हुए हाथ में कुछ सामान लिए हुए हैं।